और भी पेड़ खड़े हुए हैं।

एक की दुकान है जिसमें पाउडर सीसक्रीन--

शैंपू वगैरह वगैरह समान मिलता है।

एजेंसी है एजेंसी के अंदर तीन लड़के खड़े हुए है।

यह एक दुकान है दुकान के अंदर कापी पेंसिल किताब रखी हुई है।

रिक्शा का रंग लाल पीला है।

ये एक पहाड़ी है पहाड़ी के अंदर एक आदमी घुस रहा है।

वो उसको सामान दिखा रहा है और एक छत का पंखा लगा हुआ है और लाइटें भी लगी है जो जल रही है।

ये एक जिम है जिम करने के लिए एक आदमी मशीन के ऊपर खड़ा है।